दोनों लड़की नाच रही है। एक ऊपर खड़े होकर के नाच रही है।

और हाथ में लाल रंग की चूड़ी पेहेन रखी है।

और यहाँ बोहोत भीड़ है। बोहोत सारे आदमी और ओरत--

ये तीनो बैट बॉल खेल रहे है।

और इसके किनारे में बहोत सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी ने काले रंग का बैग टांग रखा है।

और एक बूढ़ा आदमी भी दिखाई दे रहा है।

दुकान के ऊपर घर बना हुआ है।

यह समुद्र का फोटो है। समुद्र के बीच में एक पूल बना हुआ है।

पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

ए.टी.एम. के बाहार एक आदमी खड़ा है।

इस समुन्द्र के किनारे बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है।